यह एक बेडरूम है और बेडरूम में लाल कलर के पडदे लगे हुए हैं दो कुर्सियां पड़ी है एक छोटी टेबल हैं।